गाड़ी और बाइक के बीच एक डस्टबिन भी दिखाई देता है --

इस फोटो पर एक होटल का अंदर दिखाई देता है।

टेबल और बहोत सारे चेयर दिखाई दे रहा है।

और गाड़ी का साइड में बहोत आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बहुत सारा गाड़ी है।

और एक चेयर दिखाई मिलता है और चार्जिंग पॉइंट --

का पांव हाथ और माथा देखने मिल रहा है।

और सामने एक बाइसाईकल दिखाई देता है।

रास्ता में कीचड़स भी दिखाई मिलता है।

रास्ता जो पहाड़ से जाते हुए दिखाई मिलता है पीछे में फोकी फोकी है।

नदी के सामने एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा खड़ा दिखता है।